इस फोटो मैं मुझे काउंटर दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे मछली मार्केट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बदक दिखाई दे रहे--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

बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे है।

मुझे सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।